यह चित्र एक बार्बर शॉप का है इस चित्र में एक लड़का है जिसने नए तरीके से साइड कटिंग कराई है और वह लड़का सामने की ओर देख रहा है।

वेह इस चित्र में उसकी बैक साइड का जो हेयर कट है और हेयर स्टाइल है वो तस्वीर में दिख रहा है ।

यह चित्र एक मार्केट का है जहाँ हर तरफ सी फूड बिकता हुआ नजर आ रहा है।